काफी सारी ईंटें दिख रही हैं।

ये व्हाइट कलर के दिख रही इसमे काफी सारे फाइबर्स दिख रहे हैं।

ब्लू टाइप में लिखा हुआ है दो लेडिस दिख रही है एक जेंट्स दिख रहा है।

डस्टबिन दिख रहे है पौधे वगैरा दिख रहे हैं।

इसमें ए_सी लगा हुआ है तीन बाइक्स दिख रही हैं जो ले जेंट्स दिख रहे हैं।

काफी सारे दवाईयां दिख रहे हैं।

पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

जिसमें एक लड़का है उसके फेस को हाइड कर रखा है।

सामने काफी सारे जेंट्स वगैरा दिख रहे है। लेडीज वगैरा दिख रही हैं।

जिसमें जफार बिरियानी रेस्टोरेंट है।

इसके अंदर काफी सारे जेंट्स वगैरह खड़े हो रखे हैं पेड़ पौधे दिख रहे हैं लाइट वगैरह दिख रही है।

ये ओजीनों मोबाइल दिख रहा है ओप्पो दिख रहा है काफी सारे मोबाइल्स दिख रहे हैं।

एक मंदिर है जिसमें कलरफुल लाइटिंग चल रही है।

का शर्ट पहना हुए हैं।

यहां एक प्रोग्राम हो रहा है स्कूल का हो रहा है कॉलेज का हो रहा है रहा--

काफी सारे बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर रखे हैं। एक चेयर्स पे बैठे हुए हैं।

वे चार लेडिस दिख रही हैं दो जेंट्स दिख रहे हैं।

पिक्चर सब इधर दिख रही हैं।

ये काफी सारे अलमीरा हैं जो एक स्काई ब्लू कलर का है।

एक मैरून कलर का एक ऑरेंज कलर का है।

और एक ऑरेंज कलर का भी कुछ दिख रहा है। पूरा नहीं दिख रहा है। दीवार वगैरा दिख रही है।

ये एक टेबल है जो व्हाइट कलर का है चॉकलेटी कलर का है।

और इसमें बालाजी बिल्डिंग मटेरियल लिखा हुआ है। जे_के सुपर किंग का और इसके अंदर एक जेंट्स बैठा हुआ है।

ये एक सोफा सेट है जो ग्रे कलर का दिख रहा है इसमें पिल्लो वगैरा दिख रहा है।

ये इसमें काफी सारे टेबल्स मतलब अह टेबल्स दिख रहे हैं जिसमें काफी सारे सामान रखे हुए हैं।

रेड कलर का पिन्नी दिख रहा है वाइट कलर का ड्राइंग दिख रहा है तराजू दिख रहा है इसमें--

तीन चार लोगों के पैर दिख रहे हैं और काफी सारी फिशेस दिख रही है।

झाडू दिख रहा है लाइटिंग दिख रहा है।

आई_सी_एस नाम से सेंटर कोचिंग सेंटर खुला हुआ है उसमें काफी लोगों की फोटो दिख रही है।

ये एक गुफा है जिसमें मनाम परिया लिखा हुआ है।

इसमें दो भैंस दिख रही हैं।

ये जो एक दूसरे के साथ खड़ी हैं।

जिसमें काफी सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

एक डी_टी_एच दिख रहा है।

काफी सारे घर दिख रहे हैं।